काफी एक जगह मकान दिखाई दे रहा है।

यह होटल ऊपर भी बना हुआ है काफी डिज़ाइन में है।

इनके टीचर जो हैं वो देख रहे है। कोई बच्चा गलत तो नहीं बना रहा रूम काफी बड़ा है।

रंग-बिरंगे फोम है। उन पर एक ये जो दिवार --

हैप्पी बड्डे लिखा हुआ है।

मूर्ति कितनी बढ़िया है देखो काफी अच्छी मूर्ति है। ये बाहर से दरवाजा है इसका --